एक आदमी उसके सामने जा रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

गेट के ऊपर दो छतरी फूल गुलदस्ते मालाये लटकी हुई है और सामने टेंट लगा दिखाई--

और उसमें एक रोड बना हुआ।

रोड के बीच में एक पानी का तालाब दिखाई दे रहा है उसके साइड --

सामने एक वैन दिखाई दे रही --

उसके सामने कुछ टुकड़ियां कुछ लो की पाइप्स पड़ी हुई है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।